का है जिसमें छत नहीं है और सामने बहुत से खंभे--

और साइड में एक पंखा लगा हुआ है और साइड में रैके हैं जिसमें साड़ियों के बहुत सारे खुक्के रखे हुए हैं।

एक टेबल दिख रही है जो क्रीम कलर की है और फिसने दीवाल --

चॉकलेटी और सफेद कलर की दिख रही है और साइड में कुछ और तस्वीरें दिख रही हैं जो--

काली है कोई काली नीली है और कोई सफ़ेद काली है।

ने कुछ लड़के बैठे हुए हैं जिसके हाथ में--

नीले कलर की है सामने कुछ पेड़े दिखाई दे रहे हैं और बिल्डिंग पीले कलर की है नीचे में हरी घास है।

रहा है और जिसमें डार्क नीले कलर की पट्टी बनी हुई है।

पे हुए हैं और दूर पीछे दीवाल के बहोत सारे पेड़े हैं।

भी चौड़ी सड़क है ऊपर सफेद नीला आसमान दिख रहा है और नी--

लगे हुए हैं एक पोस्टर लगा है जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आधार--

नीचे मोटरसाइकिल खड़ी हुई है दोनों साइड बहोत सारे पेढ़े है ऊपर स--

और सामान टंगे हुए हैं और ऊपर एक ब्लैक बोर्ड लगा है जिसमें सफेद कलर से एक्सेसरीज --

सामने बहुत सारी नीचे दुकानें लगाए हुए आदमी--

दुकान है ऊची जिसमें नीला कलर के खंबे है और साइड की दिवालो पर शंकर जी ल--

गाजी की तस्वीरें लगी हुई हैं और बहुत से आदमी दिख रहे हैं।

कलर के खंबे ए लगे हुए हैं और ऊपर रंगीन गुब्बारे लगे हैं जो सफेद हरे और--

दिखाई दे रहे हैं और सफेद जूते पहने हुए हैं ब्लैक कलर की लगी है।

एक स्टेज दिख रहा है और इस पे एक आदमी खड़ा हुआ है जो काले कलर की शर्ट पहने हुए हैं और सामने--

लाइट वाला झूमर लगा हुआ है और नीचे बहोत सारे बच्चे महिलाएं आदमी बैठे हुए है पीछे सफेद फूल लगे हुए है।

एक घर दिख रहा है जो वह अंदर ऑरेंज कलर का दिख रहा है और जिसके बाहर--

बिल्डिंग बनी है वो ऑरेंज और ग्रीन कलर की बनी हुई है और नीचे दो शटर --

सामने बड़ी बिल्डिंगे दिख रही है दो सफेद कलर की है और एक साइड वाली पीली--

सामने एक कार दिख रही है जो लाल कलर की है जिसके ऊपर बनी--